यहाँ लाइन से तीन चार टेम्पो खड़े हुए है काले कलर के नीले कलर के पीले कलर के आसमानी कलर के पीछे पेड़ है।